कुमार आर.एन.ए.पी. क्लासेज के यहाँ पे बच्चो को पढ़ाया जाता है सी.बी.एस.ई. टेन प्लस टू के बच्चे को पढ़ाया जाता है साइंस क्लास और आर्ट्स क्लास दोनों क्लासेज कराया जाता हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोज पढ़ने आते है ।

टू व्हीलर गाड़ियाँ अपनी सर्विसिंग कराने आती है यहाँ पे मैकेनिक होते हैं जो गाड़ियों कि सर्विसिंग करते हैं यहाँ पे उनके पार्ट्स भी मिलते हैं यहाँ पे अच्छे दामो पे गाड़ियाँ कि सर्विसिंग कि जाती है।